इस फोटो में काफी बड़े बड़े बिल्डिंग है जो कि लाल रंग के हैं उनमें बहोत सारे खिड़कियां है।

सामने से बिल्डिंग पूरा सफेद है और ऊपर करकट लगा एक बिल्डिंग पे।

इनमें बहोत सारी लाइटे जल रही है कुछ लाइट बैंगनी है और कुछ गुलाबी है।

इस फोटो में एक छोटा सा रूम है जिसके दीवाल का रंग पिंक है और इसमे दो लाइटे जल रही है और बीट का वायरिंग हुआ है।

पहाड़ पर बहोत सारे पेड़ और नीचे भी बहोत सारे हरे।

इस फोटो में दो कार जैसे है कुछ।

हमने बहोत सारे लोहे के स्टैंड जैसे बने हैं।

सभी में शटर लगा हुआ है सामने वाले दुकान का शटर ऑरेंज रंग का है और ऊपर से एक लाइट है।

इज लिखा हुआ है जो की अलग अलग रंगों से लिखा है।

सामने एक लंबा सा पेड़ है जो कि हरा रंग का है।

जो की सफेद लाल और पीले रंग के है।

इस फोटो में एक बड़ा सा दुकान है जिसमें बहोत सारे रैक है।

इस फोटो में एक केक है जिसपे बहुत सारा टॉफी है।

और बड़े बड़े लोग भी हैं बहुत सारे आदमी लोग और औरत लोग हैं एक लड़के ने ऑरेंज रंग का शेरवानी पहना है।

ऊपर सीलिंग का रंग सफेद है एक कलर का लाइट और एक सफेद रंग का लाइट जल रहा है।

आसमान सफेद है और एक साइड से नीला है।

और सामने के दिवाल के नीचे शीशा लगा है।

इनके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है।

नीचे बहुत सारे डब्बे में सामान रखा है।

नीचे बहोत सारे अलग अलग तरह के बाइक खड़े है।

इस फोटो में एक दुकान है जिसके दीवाल का रंग स्काई ब्लू है।

और काउंटर पर बहौत पेंट रखे है जो दो डब्बों में है उनका रंग हरा नीला और सफेद है।

इसमें बहोत सारे खिड़की और बहोत सारे गेट हैं।

सामने बहुत सारे रैक हैं बगल में सीढ़ी से नीचे जाने का रास्ता है।

सामने माइक लगा है और एक आदमी नीचे बैठा है जोकि ढोल बजा रहा है।

इस फोटो में एक बहुत ही बड़ा सा घर जैसा है जिसमें सामने से तीन गेट है ऊपर लाइट जल रहा है।

दीवाल सामने से सफेद है और ये एक लाइट नीचे भी जल रहा है।

अंदर बहुत सारे आदमी और औरत लोग हैं।

उनपे पीछे से ट्रॉली रखा हुआ है और एक पहाड़ है बड़ा सा जो कि हरा रंग का है।

और बहुत सैनिटाइजर हैं पीछे एक वॉश बेसिन भी लगा हुआ है।

पीछे का दिवाल पुराना और पीले रंग का है।